यह एक डान्स क्लास है जिसमे की एक लड़के एवं लड़कियां डान्स सिख रही है और इसमें ए.सी. लगा हुआ है रूम में।

और रूम के पीछे शीशे के खिड़कियां हैं परदे लगे हुए हैं और एक पंखा है लगा हुआ।

माइक लगा हुआ है दीवाल उजले पेंट है बल्ब जल रहे हैं और कुछ बच्चे हैं |

साइड से पोल है इसमें बहोत सारे बोड़ा रखा हुआ है सामनो का।

म मूर्ति के पीछे पहाड़ दिया गया है सिरहाने के पीछे ब्लू पेंट है लाइट लगा हुआ है।